के बगल में एक ब्लू कलर का स्कूटी भी दिख रही है।

किनारे की तरफ कुछ छोटी-छोटी आदि मूर्तियाँ भी दिख रही है ।

और झूले के बगल में एक भेलपुरी या एक गोलगप्पे वाला खड़ा दिख रहा है।

और उस मंदिर के आगे एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है उसने सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहन रखी है और काले रंग का पैंट --

और इस मेट के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति लोग योगा करते दिखाई दे रहे है।

इस दुकान मे एक कुर्सी लगी हुई है और उस कुर्सी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसने पेंट पहन रखा है।

उनके चारो तरफ बोहोत सारी लाइटे जलती दिख रही है और बोहोत सारे कागज उनके भी उड़ते दिखाई दे रहे है।